मुझे एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है और उसके पास बहोत सारे आदमी बैठे है।

क्यू_आर कोड भी रखा हुआ हैं।

पतीले भी दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी वहां पर दिख रहे हैं।

और वहां पर पब्लिक स्कूल का बोर्ड भी लगा है कुछ पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं।

और वहां पर बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं।

उसके ऊपर श्याम ज्वैलर्स लिखा है।

एक वाटर पार्क दिखाई दे रहा है।

मुझे बहोत ही सुंदर में गाड़ियां दिखाई दे रही है।

एक सफेद रंग का मंदिर दिख रहा है।

मॉल में बोहोत सारा समान रखा हैं।

कुछ पैकिट में हैं कुछ डिब्बे में है।

सफेद रंग की बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ पेंटिंग्स भी लगी दिख रही हैं।

केहियो ने हाथ मे फूल पकड़ के रखे हैं।

पेट्रोल पंप को संतरी रंग किया गया है।

पार्क में बहोत सारे बेंच लगे हैं।

टेबल के ऊपर गिलास जार--

कुछ लाल रंग की बिल्डिंग्स दिख रही हैं बिल्डिंग्स के पास बड़े-बड़े पेड़ छोटे-छोटे पौधे --